शॉप बनी हुई है कुछ केफे बने हुए है जो ब्लू और--

रेड कलर के है और यहां सामने की तरफ बोहत से लोग बेठे है यहां पर बोहोत सारी कैन रखी है कंटेनर रखे है ।

व्हाइट कलर की और इसमें कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

और बिल्डिंग बनी हुई है और सामने की तरफ बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और यहां पर कुछ ए_टी_एम लगे हैं कुछ मशीन लगी है जो व्हाइट और --

के और आगे एक बड़ी नाव है जिसमे कुछ लोग बेठे हुए है।

खड़ी हुई है और बिच में कुछ दो नाव चल रही है जिसमे लोग--

और कहि पर जगह बिलकुल खाली है कहि पर घास में भी--

चेयर बनी हुई है चारो तरफ लोहे कि रेलिंग कि बाउंड्री बोल बनी है।

साईट से एक रोड जा रही है रोड पर से बहोत सारी कार निकल रही है।

ओर रोड की दूसरी तरफ बहोत सारी बिल्डिंग बनी हुई है उनके--

यहाँ पर एक येलो कलर का घर बना है जिसके बाउन्डरिस रेड कलर की है और ऊपर भी कंस्ट्रक्सन का काम चल रहा है फर्स्ट फ्लोर के लिए सामने की तरफ यहाँ पर --

सुन्दर लग रही है ये एक रेड कलर कि टेबल पर रखी है।

रखी ह दूसरी तरफ कुछ प्लास्टिक के स्टुल्स और दूसरा--

एक रखा हुआ है वाइट कलर की बोटल रखी है सामने कुछ सामान टंगा है।

यहाँ पर एक चपल और जूतों कि शॉप है जहाँ पर अलमारि यो में सेट करके वेक्स में--

और यहाँ कुछ मुर्तिया भगवान कि भी रखी कुछ पोस्टर लगे--

साड़ी पेहनी है पीछे कि तरफ जो इसका--

बैक साइड है वहां पे वाइट रेड कलर के पोस्टर लगे हैं ब्लू कलर के पर्दे लगे हैं बलून से डेकोरेशन किया गया है प्लास्टिक की--

चेयर रखी है ग्रीन रेड और वाईट कलर कि यहाँ पर बलून लगे हुए है ब्लू पर्दे पर--

आक्रति में डिजाइन बना रखी है बिच में कुछ टीचर्स खड़े है।

और क्रीम कलर के फ्लोवर से डेकोरेट किया गया है दोनों तरफ लोहे के रेलिंग्स लगी है।

जहां पर एक ग्राउंडेच है और पूरे ग्राउंड पर ग्रीन कलर की घास लगी हुई है आस पास।

ओर आगे बहोत सारे रूम्स बने हुए है जिसमे वाईट लाईट लगी ह--

और इनके पीछे कि तरफ भी लोगो कि बहोत भीड़ है।

और यहाँ पिंक कलर के वाईट कलर के बहुत से पर्दे लगे है।

यहाँ पर एक बहत बड़ी बिल्डिँग बनी है जो ब्राउन वाइट कलर की है यहाँ पर एक ब्लैक कलर की ऊपर स्क्रीन लगी है जिसके आसपास बहुत सारे --

जो बहुत ही अलग अलग कलर की है यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ है इसके आगे की तरफ भी कुछ रेड कलर की बिल्डिंग्स बनी हैं।

और इन झूले पर बहोत से बच्चे झुला झूल रहे है।

और आस पास में बहोत से बड़े पेड़ लगे हुए है दीवारे पर बहोत ही अच्छी--

यहाँ पे एक पार्क है पार्क के बिच में एक फवारा चल रहा है।

पार्क के चारो तरफ और कुछ लोग यहाँ पर गुम भी रहे है बिच में से रास्ते--

यहाँ पर शुज कि शॉप है जिस सामने पोस्टर भी लगा है।

और फिर अर शुज का जहाँ पे बहोत साए शुज --

टंगे हुए है बहोत सारी अलमारि यो में रखे और बहोत सारे बोक्स है।

उसको रखा गया है बीच में एक छोटी सी जगह है बहोत छोटी दुकाने भी है पूरी व्हाइट कलर की है पंखे लगे हैं व्हाइट कलर की लाइ--

और बिच्च में कुछ जगह खाली है वहां गमले रखे है रेड कलर के--

ऊपर एक ग्राउंड है और ग्राउंड पर कुछ वाईट कलर के चुने से निशान बनाए गए है।

इट और दूसरा सामान भी पडा हुआ है।

बिल्डिंग के चारों तरफ वाइट कलर की बाउंड्री की गयी है बाउंड्री के आस पास बहुत सारे पेड़ लगाये गये हैं सामने कुछ पौधे लगे हैं।

जालियों की बनी है। सामने एक और यह लाइट येलो कलर का भी बिल्डिंग है इसका स्कूल का--

सामने ग्राउंड है जहाँ घास लगी है वहा पर बहोत सारे स्टूडेंट --

यहाँ पर एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जो फोर्थ फ्लोर कि है।

वो रेड और वाईट कलर कि इसमें गेट और विंडोज लगे हुए है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी है जो वाईट कलर कि है इस पर जगह जगह--

कुछ ग्राउंड में चेयर लगी हुई है।

दो लगेज ये हे और कुछ लोग यहाँ आस पास है।

यहां पर एक कार का शोरूम है जो बहोत ही बड़ा है और ये पुरा--

को अंदर कि तरफ पूरी वाईट लाईट लगी है सामने बहोत सारी--

ए_टी_एम का जो हैंड गेट है वो पूरा ग्लास का बना हुआ है।